तस्वीर में एक रास्ता है| रास्ते पर से एक ऑटो जा रही है जिसमें दो पैसेंजर दिख रहे हैं| दीवार साइड पर एक स्कूटी और साइकिल खड़ी है| एक --

और ब्रिज के नीचे सीमेंट से कुछ गोल जैसा बना हुआ है जहाँ पर पांच छे आदमी खड़े होकर के कुछ कर रहा है।

इस तस्वीर में एक ब्रिज है और ब्रिज क ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन के सामान रखे हुए हैं और ब्रिज क नीचे पाँ- छे आदमी खड़ा है।

ये तस्वीर एक बस स्टॉप की लग रही है जहाँ पर दो बस खड़ी है और एक बस के सामने एक कुछ बैनर लगा हुआ है।

तस्वीर में मैं देख पा रही हूँ की ये एक इंडियन बैंक है जिसका गेट खुला हुआ है| गेट के ऊपर एक खिड़की है और राइट साइड में एक दूकान है जो बंद है| दुकान के सामने एक व्हीकल्स खड़ी है।

ये एक बहुत बड़ी दरिया की तस्वीर है। दरिया के पीछे एक टावर है और टावर के पीछे बहोत सारे दरख़्त नजर आ रहे हैं।

ये एक रोड की तस्वीर है जहाँ पर एक बाइक आदमी लेकर के जा रहा है| और एक ऑटो भी चल रहा है और एक बस राइट साइड की तरफ जा रहा है।

ये तस्वीर एक रोड की है| रोड के सामने से एक बस आ रहा है और बस के पीछे कुछ छोटी-बड़ी सवारियां है जो आ रही है बस के पीछे|

ये एक एस_बी_आई बैंक की तस्वीर है। जिसमें दो गेट है और दोनों गेटे बंद है। लेफ्ट साइड में ए_सी के फैन लगे हुए है। उसके नीचे एक खिड़की है।

ब्लू बस के सामने दो-तीन बस्ता रखा हुआ है।

और बस के लेफ्ट साइड में एक आदमी खड़ा है और राईट साइड में खाली स्पेस है जहाँ पर दो-तीन आदमी नज़र आ रहें हैं।

ये एक ट्रेडिसनल बिल्डिंग है जो बहुत ही खुबसूरत है और इसकी दिवारों और छतों पर बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी की गयी है।

ये एक किसी मंदिर की तस्वीर है जिसमें लोहे की जाली लगी हुई है और मंदिर के अंदर तीन-चार मुर्तियाँ रखी हुई है जिसमें से एक मूर्ति गणेश जी की भी है।

साइड में एक आदमी व्हाइट कलर का ड्रेस पहन कर के खड़े हो कर के देख रहा है। और मेला मे बहोत -सी बत्तियां भी लगी हुई है।